यहाँ पर एक पानी का फुब्बारा दिखाई दे रहा है।

और साइड में एक दीवार --

क साइड में दो लड़के खड़े और दिखाई दे रहे है साइड में पेड़ दिखाई दे रहे है थोड़ा आसमान दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक ट्रक दिखाई दे रहा है ट्रक सड़क पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है सड़क के --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

दिखाई दे रहे है कुछ लोग अ नदी में हाथ जोड़ कर खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग नाहते हुए दिखाई दे रहे है।

और लोग के पास कुछ कागज कलम भी दिखाई दे रहे है एक लड़का खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहे है।

जिस पर रेलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ खम्बे लगे हुए दिखाई दे रहे है खम्बे --

फ्रिज में एक चमचम रखी हुई दिखाई दे रही है एक कागज डला हुआ दिखाई दे रहा है।

एक टेबल पर एक कागज डला हुआ दिखाई दे रहा है साइड में --

खुला आसमान दिखाई दे रहा है।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

यह एक ठेला दिखाई दे रहा है जिस पर श्री राम चार्ट भंडार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है